यहाँ पर अ-टमाटर रखा हुआ है जो रेड कलर का है मिर्ची रखी हुई है जो रे-ग्रीन कलर की है भिन्डी रखी हुई है प्याज रखी हुई है।

नदी बनी हुई है छोटी-सी नदी में नदी के किनारे शिप खड़ी हुई है जो ब्लू कलर की है और यहा पर बेंच बनी हुई है तीन--

नीचे बहुत सारी लेडिज बैठी हुई हैं एक यहाँ जेन्ट्स खड़ा हुआ है जिसके बाल दिख रहे हैं। ऊपर आसमान है जो पूरा ब्लैक कलर का है।

यहाँ पर अ छोटे-छोटे पॉट रखे हुए है गुलदस्ते जिसमे फ्लावर लगे हुए है रेड एंड वाइट कलर के दो बाजु में बैनर लगे हुए है जो रेड कलर के है और उसमे व्हाइट कलर से कुछ लिखा हुआ है।